सारे गिरा के और यहाँ कलर बाई कलर पौधे वह भी रखे हैं| ट्रीज भी रखी हैं और ये ऑरेंज कलर पिंक कलर ब्लू कलर बहोत कलर --

दुकान है यहां पर बोहोत सारे पेन भी रखें हुए हैं पिंक कलर एंड ब्लैक कलर के और यहां पर बैग भी टंगा है ग्रीन कलर का ब्लू कलर का।

और यह बिलकुल लग रहा है रात की पिक है और यहाँ पर ना लाइट भी जल रही हैं (है) और यहाँ पर टाइल्स भी और यह किसी बॉक्स के अंदर रखा है कत्थई से कलर का और अंदर ब्लू कलर का कुछ बिछा हुआ है उसके ऊपर रखा है यह पत्थर।

और यहाँ पर कुछ घास भी लगी हुई है और कुछ कलर्स भी पुते हुए हैं और नीचे साइड जाने की जगह भी है।

वहाँ पर एक भैया खड़े हुए हैं जो कुछ कर रहे हैं और इनने ब्लैक कलर का पैन्ट एण्ड क्रीम सी वाईट कलर की शर्ट पहनी है और हाँ और ऊपर कुछ कैप सा जैसा गमछा जैसा बांधा हुआ है यहाँ पर।